जिसमें आप स्कैन करके डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं यह सभी दुकानों मे लगा होता है।

फव्वारा लगा हुआ है यह बीकानेर का है पब्लिक पार्क के तरफ का।

दाल चावल पनीर की सब्जी मिक्स वेज सलाद --

जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं जूस की मशीन लगी हुई है।

जहां पर कुत्ते तीन चार नज़र आ रहे हैं तीन चाड लगी है वॉटर कूलर भी लगा है।

इनरवियर टी शर्ट जींस और सब आपको सही दाम पर अवेलेबल हो जाएंगे।

यह किसी के घर का दृश्य है जोकि किसी होटल से कम नहीं लग रहा।

ये है एयरटेल का शोरूम यहां पर नेटवर्क बहोत ही अच्छा है।

आपको असुविधा लगे अपनी सिम को लेकर तो यहां जरूर आइये।

छूट यहां मिल रही है क्योंकि मानसून धमाका ऑफर है।